ब्ल्यूइस टाइप में दिख रहा है और ये--

अह रेड अह व्हाइट ग्रीन और औरेंज का बेलून टंगा हुआ है।

ए_सी बस है तीनों मतलब जैसे कोई टूर के लिए जाता है ना वो सब बस है।

आ ओ दिख रहा है यहां पर शाखा बहोत अलग-अलग डिजाइन यहां पर शाखा बना हुआ है तो ये गोल्ड का ज्वेलरी शॉप है।

ये एक स्टोर है अ सुपरमार्केट जो होता है वो यहां पर कुछ ए_पी मैगी ये सब रखा हुआ है कुछ कुछ--

लिखा हुआ है और आसपास में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं ऑटो ये सब दिख रहा है थोड़ा सा ये मार्केट एरिया है।

यहां पर एक मंदिर टाइप का दिख रहा है बरा सा मंदिर टाइप का और--

काउंटर टाइप का बना हुआ है मतलब जो गेंदा का जो सुर है अह तो उसे पानी अह गिर रहा है और कुछ कुछ बच्चे उसके ऊपर आ के बैठ रहे हैं।

और यहां पे कुछ कुछ समान है मतलब जो भी पे यूज होता है घर में--

जो कि व्हाईट कलर का घर जैसा है अ और यहां पे सामने भी बैलून से सजाया हुआ है तो--

अंदर में एक रास्ता आ रहा है जो अह रास्ता के दोनों साइड --

और अ एक बड़ा सा घर दिख रहा है दो तल्ला तीन दो तल्ला या तीन तल्ला का है।

ये घर दिख रा है शायद ये घर है।

यहाँ पर चार अ व्हाइट कलर का ये टाइप का बना हुआ है--

बड़ा सा एक मोर है और ये का बास-बास का कुछ बना हुआ है उसके ऊपर बैठा हुआ है ये मोर --

अ सेलोटेप दिख रहा है मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स का अ समान होता है वो सब रखा हुआ है।

इधर बहोत सारे शॉप नहीं बोल सकते यहां पर--

ये दिया हुआ जो ब्लैंकेट होता है वो और एक टॉवल दिया हुआ है और नीचे में कुछ कुछ है जो--

ये बना हुआ है अ गार्डन टाइप का हल्का सा है और ये अ नाइट का व्यू है।

यहां पर एक घर टाइप का दिख रहा है और सामने में कुछ टेंट हाउस टाइप के दिख रहे हैं।

मतलब बन रहा है पंडाल टाइप का जो बांस उस है वो सब ऐसे रखा--

यहां पर एक अ पंडाल टाइप का किया हुआ है और यहां पे बहोत सारे लोग अ का इकट्ठा होकर रखें हैं।

अह जो पत्थर के बने हुए हैं पत्थर के जो होते हैं वो वाले।